फल वाले की दुकान है गाड़िया खड़ी हुई है लोग भी आते जाते--

गंदे बर्तनों की खाना खाने के बाद डस्टबिन लगाए गए है।

जैसा की आप देख पा रहे है सामने की ओर एक --

चेयर भी रखी है चेयर में लाल रंग की गद्दी बिछी हुई है।

जैसा की आप देख पा रहे है सामने की ओर --

सामने की ओर एक जगत पूरा शाखा लिखा हुआ है।

और पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा--

एक औरत आगे की और चढ़ रही है और आसमान दिखाई दे रहा है।